और यह पेड़ जो है इन्हें नीचे से रेड और व्हाइट कलर से पेंट किया गया है इनके पास में रेड कलर के--

गमले रखे हैं जिनमें पौधे लगे हैं आस पास घास भी --

आसपास यहां पर बहोत से लोग खड़े हैं।

सामने दो ट्रॉली जा रही है जो ब्लू ग्रीन येलो कलर की है और बहुत से लोग यहां पर पैदल आ जा रहे हैं।

पेड़ लगे हुए हैं सामने एक बाउंड्री बनी है जो ब्लू और ऑरेंज कलर की है।

रोड पर से बहुत सी कार ऑटो और दूसरे वाहन निकल रहे हैं।

यहां पर एक मशीन है जो रेड और वाइट कलर की है ये पूरा प्लांट की तरह तैयार किया गया है।

सामने की तरफ कुछ व्हाइट कलर की तारबंदी हुई है और नंबर लिखे हुए--

ब्राउन और ब्लैक ब्लेजर पहना है इनके पास में बैग है कुछ चेयर पर--

व्हाइट और ब्लू कलर का गोल डिजाइन का बेनर लगा है आस पास बाउंड्री बनी हुई--